बहुत सारा कैन्डल भी जल रहा है और क्रॉस भी बना हुआ है।

यह एक मंदिर का तस्वीर है इस मंदिर में दुर्गा जी का मूर्ति लगा हुआ है मूर्ति सफेद रंग का है।

यहाँ एक किताब के दुकान का तस्वीर है इस दुकान में बहुत सारा लोग बैठा हुआ हैं और सामने एक आदमी मोबाईल ले के कुछ बोल रहा है और कुछ रिकॉर्ड कर रहा है ऐसा लग रहा है जैसा की ये कोई लेखक है जो की अपने किताब का अनावरण करने आए हैं इस दुकान में बहुत लोग बैठा हैं कुछ लोग एन्जॉय कर रहा है हंस भी रहा है ।

पीछे कुछ गिफ्ट कार्ड और गिफ्ट आइटम वगैरा भी रखे हुए हैं। इसका केक बहुत ही स्वादिष्ट होता है।

यह कृषि विज्ञान केंद्र का कार्यालय है। यह एक सरकारी कार्यालय है और इसका ये प्रशासनिक भवन का तस्वीर है जिसमें बहुत सारा खिड़की है एक मंजिला इमारत है।

यह जुब्बा सहनी पार्क का तस्वीर है जिसके मेन --